यह एक बहुत बड़ी गुफा है इसके आस-पास बीच में देखो रास्ता गया-- है इंसान समाने खड़े होके

जो और जाकिट पेहना हुआ है ब्लू कलर कि पैंट पेहना हुआ है येलो कलर कि शूज पेहना हुआ है और ब्लैक कलर के चश्मा लगाया हुआ है।

ये एक गाँव है जिसके अंदर एक छोटा स घर है यह सब फैमली है जिसके अंदर उनके बच्चे भी हैं दादी भी हैं।

साइड में इसका दोस्त बैठा हुआ है जो मोबाइल चला रहा है उसी के मिरर के सामने दो कंघे रखे हुए है और एक फुसफुस रखा हुआ है जिससे पानी से फुआरे मारते हैं।

ये एक स्कूल के बाहर का फोटो है जिसके ए बाहर कई सारी गाड़ीया खड़ी है।

ये दो लड़कियाँ है जो सल्फी ले रही है पीछे एक लड़का है जो स्प्लेंडर पे बैठा हुआ है इसी के सामने एक कॉफ़ी शॉप है जो अभी -अभी न्यू ओपन हुई हैं।